इस इमेज में देखिएगा सामने यहाँ पर पत्थर की चट्टान दिखाई दे रही है और सामने बीच में एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।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

इस इमेज देखिएगा यहां पे सामने कुछ बच्चों ने कागज के टॉय बना के रखे हुए हैं जो देखने में काफी सुंदर लग रहे हैं।

इस इमेज में देखियेगा सामने यहां पर कई सारे लोगों के भीड़ दिखाई दे रही है और सामने एक बड़ा सा मैदान नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे सामने एक दुकान दिखाई दे रही है जिसके ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है थाली हाउस ।

इस इमेज में दिखेगा आपके सामने एक कमरा दिखाई दे रहा है और ऊपर की ओर लाइटे भी जलती नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे सामने डाक घर दिखाई दे रहा है और गेट के पास में एक आदमी बाइक पे बैठा दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे देखियेगा यहां पे सामने एक महल दिखाई दे रहा है और बीच मे छोटा सा ग्राउंड भी बना हुआ नज़र आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने सड़क के पास में बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है और कुछ लोग भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे सामने बड़ा सा हाॅल दिखाई दे रहा है और काफी सारे टेबल और कुर्सी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे देखियेगा सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और नीचे कुछ बस भी खड़ी हुई नज़र आ रही है।

इस इमेज मे देखियेगा सामने मंदिर नजर आ रहा है जिसमें राधा कृष्णजी की मूर्ति और फूलों के हार दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में देखियेगा यहां पर सामने नदी दिखाई दे रही है और आसमान में सूरज भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे सामने सड़क पर कार चलती नजर आ रही है और सामने देखिएगा एक पेट्रोल पंप भी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने एक फिसल पट्टी दिखाई दे रही है और एक बच्ची यहां पर नीचे बैठी नजर आ रही है।

कुछ काम चलता नज़र आ रहा है और सामने दो मजदूर खडे़ हुए है जिन्होंने हरा जैकेट पहन रखा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे सामने टेबल पर एक बड़ी सी मछली दिखाई दे रही है और आस पास कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर देखिएगा एक जंगल दिखाई दे रहा है और नीचे कुछ हिरन बैठे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे सामने गेट पर कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं और नीचे कुछ गाड़ियां खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहाँ पे सामने एक अ हॉल दिख अ मैदान दिखाई दे रहा है और कुछ कुर्सियां रही हुए नजर आ रही हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे सामने एक बीच में एक मूर्ति दिखाई दे रही है और सामने देखिएगा यहां पर --

इस इमेज में देखिएगा यहां पे सामने एक हॉल दिखाई दे रहा है और साइड में देखीयेगा कुर्सियां लगी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर देखिएगा एक रास्ता दिखाई दे रहा है और आसपास कुछ बिल्डिंगें भी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे सामने एक हॉल दिखाई दे रहा है और यहां पर काउंटर पर कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखियेगा यहां पर जंगल दिखाई दे रहा है और सामने एक बड़ा सा पहाड़ भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे सामने सड़क पर कुछ ऑटो रिक्शा और टेंपो नजर आ रहा है बीच में यह आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे सामने दुकान दिखाई दे रही है एयरटेल की और नीचे एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज मे सामने देखियेगा एक आदमी दे रहा है जो कुर्सी पर बैठकर काम करता हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहाँ पे सामने स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है और बाहर एक व्यक्ति नजर आ रहा है।